यह एक राजा टेंट लाइट हाउस एंड डी.जे. साउंड लिखाया हुआ हैं ।

और उसका दरवाजा खुला है जोकि ऊपर में शटर है उसके किनारे में कुछ उर्दू भाषा में पोस्टर भी लगा हुआ दिखाई दे रहा हैं ।

उस मोटरसाइकिल के आगे में कुछ रेत भी दिखाई दे रहे --

और उसके किनारे में ऊपर में कुछ लिखाया है भारत पेट्रोल --

जोकि इस ट्रक के नीचे में संगम लिखाया हुआ है और ए.जी.पी. भी लिखाया हैं ।

और उस कुर्सी के सोफा का कलर नीला भी हैं ।

और एक व्यक्त्ति अपने हाथ में एक कागज को पकड़े हुए पकड़ा है और उस छात्रावास के बीच में कुछ बैनर्स सा लगा हुआ दिखाई दे रहा हैं ।

जिसे गेंदा के फूल से सजाया गया हैं ।

यह एक सुधा पार्लर ऊपर में लिखा हुआ हैं ।

और बीच-बीच में बिजली के खम्भे भी गड़े हुए हैं ।